सफ़ेद कलर की शर्ट पहनी हुई है पास में एक बिलडिंग दिखाई दे रही है बिलडिंग के पास एक पेड़ दिखाई दे रहा है जो--

यहाँ पर एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है लड़का फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा है लड़के ने चेक्स वाली शर्ट पेहनी हुई दिखाई दे रही हैं ।

तथा उनमे पिले फूल लगे हुए दिखाई दे रहै है नीचे एक बक्शा रखा हुआ दिखाई दे रहा है बक्शे के पास दो आदमी खड़े हुए दिखाई दे रहै है।

दलियारे बनी हुई हैं पिले रंग का बोर्ड बना हुआ है ऊपर एक पास में एक ट्रक खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बहोत सारा सामान रखा है कुछ डिबिया दिखाई दे रही है ऊपर भी टेप दिखाई दे रही है स्टेशनरी जैसा सामान दिखाई दे --

तरबूज दिखाई दे रहै है जिसका रंग हरा दिखाई दे रहा है केले दिखाई दे रहै है गोभी दिखाई दे रही है पाइनएप्पल --